जो है शाम की पिक्चर है इसमें काफी सारे पेड़ नज़र आ रहे है एंड कुछ पौधे इनमें से देवधार के पेड़ है।

और सामने ही माउंटेंस दिखाई दे रही है और आसमान थोड़ा सा क्लाउडी नजर आ रहा है।

उसके साथ ही एक पेड़ नजर आ रहा है और ये काफी ब्लरी सी पिक्चर है जिसमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

कलर्ड में ग्रीन कलर है एंड रेड रोजेस दिख रहे हैं।

चर्च के सामने काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

जिसमें बहोत सारी गाड़ियाँ पार्क की हुई--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

इसमे बस घास का कलर ग्रीन नजर आ रहा है।